यहाँ बहुत सी मछलिया दिखाई दे रहे है और बोतल दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति मछली काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक किसी रेस्टॉरंट की किचन का सीन दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत से सामान दिखाई दे रहे है कढ़ाई दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे खेतोंकी तस्वीर दिखाई दे रही है। जहा बहुत से कूच कूच फल वगैरा लगे हुए है बहुत से पेड पौधे दिखाई दे रहे है। एक व्यक्ती दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर मैं मंदिर दिखाई दे रहा है जो की पुराना मदिर दिखाई दे रहा है झोपडी दिखाई दे रही है उसमे सीड लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ती दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है घर दिखाई दे रहे है।

लाइट दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही--